एक ने पगड़ी बांध रखी है उस के हाथ में बड़ा सा ढोलक है। पीछे एक बड़ा सा गेट है।

एक रूम है उस मे नीले कलर के छोटे-छोटे कैबिन बने हुए हैं।

पीछे ब्लू कलर का पर्दा टंगा हुआ है। उस पे बड़ा सा पोस्टर है।

संतरे रखे हुए हैं हरे और पीले कलर के। अनार रखे हैं लाल कलर में। केले हैं हरे कलर के।

एक काँच का बॉक्स है जिसमें मिठाइयां रखी हुई हैं।